मुझे एक गांव की फोटो दिख रही है वहाँ पर सूरज उगता हुआ नज़र आ रहा है एक सूखा पेड़ है।